एक बहुत बड़ा हॉल है जिसके फर्श पर सफ़ेद कलर की टाइल्स लगी हुई है हॉल में बहुत सारी कुर्सियां है।

सभी लड़किया पीछे स्कूल ड्रेस में हैं और पीछे कुछ गार्डन दिख रहा हैं।

लोहे के लम्बे-लम्बे खम्बे लगे हैं उसके ऊपर टीन शैड लगा हैं।

बहोत सारे लोग खड़े है बहोत सारा स्टेशनरी का सामान रखा हुआ हे।

एक खंड में कच्चे केले दिख रहे हैं एक खंड में आलू और एक खंड में पपीता हैं।

वो भी दिखाई दे रहे है गार्डन की बाउंड्री में लाओ लोहे की जाली लगी है वो दिख रही है।